लइटो का रंग सफेद और बैगनी है वहीँ ऊपर आसमान है आसमान का रंग नीला है ।

और वहीं एक लड़की भी है जिसने गुलाबी नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं।

ऊपर आसमान है आसमान का रंग नीला और सफेद है।

सारा उन इमारतो का रंग नीला काला हरा है।